यहाँ पे स्टेट बैंक एटीएम लिखा हुआ है। यहाँ पे बहोत सारे लोग खड़े हैं। यहाँ पे - यहाँ पे एक बाइक खड़ी हैएक रिक्शा खड़ा हैसाइड में एक और बाइक है।

यहाँ बहोत सारे बच्चे बैठे हुए हैं जो ग्लू-व्लू से कुछ काम कर रहे हैंकुछ बना रहे हैं। यहाँ एक पौधा लगा हुआ हैऔर एक पौधा और है जो गमले में लगा हुआ है।

इनके टीचर्स खड़े हैं। एक टीचर के हाथ में प्लेट है। यहाँ गेट है जो खुला हुआ है और यहाँ डे यूनाइटेड लिखा हुआ है।